जिसकी की स्रोत यह एक पानी का स्रोत है।

खेल का मैदान है जिसके चारो ओर भीड़ उमड़ आई हैं खेल को देखने के लिए जिसके अंदर की प्‍लेयर खेल रहे हैं।

इसके अंदर एक लकड़ी का रखा हुआ है जिसके ऊपर शेर बैठा हुआ है और वह बाहर की ओर देख रहा है।

जो कि एक घना जंगल सा हैं।

यह एक घर के बाहर का आंगन है जिसमें कि स्‍कूटी और दो बाईक खड़ी हैं जिसके साथ दो लोग भी खड़े हुए हैं।

इसमें एक लिफॉय सांइटिज़ेर रखा हुआ है हैंडवाश के लिया साबुन भी रखा है।

खिलौने की दुकान है जिसके अंदर खिलौने और कई प्रकार के सामान मिल ई जाते हैं।

एक झोपड़ी सी है जिसके पास ही मुर्गे रहते हैं।

यहाँ पे तीन लाल कलर की कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

होटल का रूम है जो कि बहुत अच्‍छे से डेकोरेट किया हुआ है।

विभाग है जिसके पास कि बहुत सारे पत्र रखे हुए है यहाँ पे एक कम्‍प्‍यूटर है जिसमें कि लोग काम कर रहे हैं।

उसके पार बहुत सारे वृक्ष है फूल हैं और इन जो कि इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं इसका रास्‍ता बहुत सुन्‍दर-सा है बहुत क्लीन सा।

जिसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं।

इसके बाद वृक्षों को ढकने के लिए उनके पिंजरे लगे हुए है और यहां पर बहुत सुन्‍दर से वृक्ष है और यहां पर बिजली के खम्बे हैं।

जिसमें कि दो चम्‍मच तीन कटोरी और एक प्‍लेट है।